यह लाल रंग में हैं इसमें पानी की बुँदे हैं ये गुलदस्ता के लिए तोड़ा गया हैं।

दे रहा है इस तस्वीर को पहाड़ों को ऊपर से खिंचा गया है।

इस तस्वीर में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यह एक ए.के. फ़िटनेस जिम है यहाँ पे सेलीब्रेशन हो रहा है यहाँ पे कुछ अवार्ड बाँटने वाले है।

एक खंभा लगा है बगल में खाली जगह है जहां पे घासे हैं --

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा हैं कि यहाँ पे इसाई धर्म वाला कुछ प्रोग्राम हो रहा हैं यहाँ पे आदर माला पहने हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि यहां पे गुब्बारा है दिल के सेप में --

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये एक गाड़ी का गैराज है जिसमें ब्लैक कलर का गाड़ी है ये यहां पे --

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये एक यस राज एंटरप्राइज मोबाइल शॉप है हमारे यहां टीवी कूलर पंखा स्टेबलाइजर डीटीएच एवं सिलाई मशीन उचित मूल्य पर --

घेरा गया है यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है आसमान भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये एक लेट थ्री लखनराम अग्रवाल मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रायगढ़ का है।

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक टेबल में खाने का प्लेट है यहाँ में एक काले रंग की प्लेट है जिसमे --

यहाँ पे चार लोग बैठ कर उनकी पूजा कर रहें है।

बहुत सारे हिरण लोग हैं जो इधर-उधर देख रहे हैं घूम रहे हैं --

छोटे-छोटे ईटें टाइप का दिख रहा है यहाँ पे रंग-बिरंगे कलर भी दिखाई दे रहे है।

सोफ़े में एक बैग रखाया हुआ है यहां पे एक पंखा है यहां पे बहुत सारे लाइट जल रहे हैं यहां लोग है.

इस की तस्वीर में मुझे यह दिखाई दे रहा है कि ये एक मेडिकल का स्टोर है यहां पे बहुत सारी मेडिकल की दवाइयां दिखाई दे रही है।

यहाँ पे कुछ बोतलों में कुछ रखा हुआ है यहाँ पे लोग हैं।